यहाँ प्रतियेक दिन लोग आते है।

स्टेशन में बैठने की जगह है | यह स्टेशन में ना खाने पीने की कोई वस्तु मिलती है ।

यह एक दुकान है यह दुकान में लोग सामान खरीदने के लिए आते है।